यहाँ पे एक बहुत सारे गाड़िया जो चल रहे इसके ऊपर में वहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ है जिसपे चढ़ के ऊपर जा सकते हो ऊपर में बहुत हरे-हरे जगह दिख रहे बहुत सारे पेड़-पौधे दिख रहे कटिंग --

आ रहा है और बोहोत सारे गाड़ियां भी आ रही हैं। एक आइसक्रीम वाला है। ये बजाट टाइप का दिख रहा है और यहाँ एक बाज़ार ही है जिस प्रकार यह दिख रहा है।

जो घर पे बहुत सारे पेंटिंगे की गयी है । यहाँ पे ये जो पुराने जैसा मंदिर जैसा लग रहा है बहुत सारे पेड़े लगी --

स्कूल की है यहाँ पे आमो के बोहोत सारे पेड़ हैं जिनमे से कुछ हरे कुछ अलग कलर के और सब गरीब बच्चे लग रहे हैं जो मासूम --